रंग बिरंगे लोग दिखाई दे रहे हैं।

बहुत से घर दिखाई दे रहे हैं।

कुछ आसमान दिखाई दे रहा है।